ये जो की बहुत अच्छा है बहुत बड़ा मकान है और फील्ड है।

और यहाँ पर सब कुछ है अच्छा लग रहा है दिखने में भी।

यहाँ पर जगह भी बहोत सुंदर है और अच्छा खासा दिख रहा है खूबसूरत भी है ।

ये बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में यह पार्क --

छोटा-छोटा पहाड़ भी है पानी भी है नीचे की तरफ बहुत सुन्दर --

यह जो कि बहुत बड़ा प्यारा घर है सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है। अच्छा-खासा हैअच्छा लग रहा है यहां आ का जगह भी बहुत बड़ा प्यारा लग रहा है।

बहुत खूबसूरत है यहाँ पे जाना ई बहुत अच्छा लग रहा है सब के सब।

और खूबसूरत भी लग रहा है इके अच्छा है।

और बच्चे सब अपना फोटो निकलवा रहें हैं खड़े होके और पूरा एगो स सर पे टोपी लगाया है।

और खूबसूरत भी है पूरा उम हरा-भरा दिख रहा है यहाँ अच्छा खासा लग रहा है और सब ठीक है।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

ग्राउंड है और हरा-हरा जगह भी है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। खूबसूरत भी है। बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ पर।

अब पूजा का लग रहा है अगरबत्ती ओकरा है जो होलसेल में बिकने वाली है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

और इसमें गरइ मछली है सिधरी मछली है जो की संपूर्ण मछली है यहाँ पर।